यह एक स्कुल का कैंप है जहाँ पर प्रोजेक्ट कम्पलीट हो रहें हैं और बहुत सारे बच्चे हैं।

दो चैनल गेट लगे हैं चैनल गेट के सामने हल्‍की-हल्‍की घास लगी दिखाई दे रही है और एक व्यक्ति खड़ा है जो कि ब्लू कलर की शर्ट में हैं।

ये एक कैंप है जहाँ पर टेबल रखे हुए है जिस पर ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा हुआ है।

चार पांच चार डॉक्टर एक डॉक्टरनी बैठे हुए हैं जो कि ऊपर व्हाइट कलर का कोट पहने देवाल घड़ी लगे हैं फेन लगी हुई है।

स्लेटी कलर का है और बहुत सारी विंडो लगी हुई है लोहे की जाली लगी हुई दिख रही है।

जिससे रंगोली पेंट कर रहीं हैं पीछे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहें हैं और गमले रखे हैं जाली लगी हुई --

एक लेडिज खड़ी है जिसने व्हाइट कलर का मास्क लगाए चैनल गेट दिख रहा है और दीवाल व्हाइट कलर से पेंट है।

और सीट रखी हुई है टेबल पर पीछे लोहे की विंडो लगी हुई हैऔर एक लेडिज बैठी है जिसने पिंक कलर की साड़ी पेहन रखी ---

यह एक डांस प्रेक्टिस हॉल है जहां पर चार लड़कियां --

ग्रीन पौधे लगे हुए हैं और एक लड़की व्हाइट कलर की फ्रॉक में है।

और वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे है एक लड़का हाथ में सीजर रखे हुए है और वो टाइपिंग को काट रहा है पीछे लोहे की जाली लगी हुई दिखाई दे रहे है।

पेंटिंग कर रहे है पेड़-पौधे लगे हुए है लाइटिंग है और आसमान दिख रहा है एक व्यक्ति खड़ा है जो कीपिक्चर निकाल----